किनारे तरफ भी पत्थर है और झाड-पेड़ लगे हुए हैं।

कुछ गाड़ियां और साइकिल खड़ी है कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पार्किंग में काफी सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है जो की अलग-अलग कंपनी और अलग-अलग ब्रांड की है कुछ गाड़ियाँ सामने तरफ खड़ी है कुछ किनारे इस तरफ और कुछ किनारे उस तरफ बीच में खाली जगह है और ऑरेंज कलर की एक शीट ऊपर दिखाई दे रही है।

फीमेल डमी दिखाई दे रहा है जिसमें की ओरेंज कलर का प्रिंटेड कुर्ता पहना है और नीचे पजामा पहना हुआ है गले मे उसने कुछ हार पहना हुआ है किनारे तरफ तीन साड़ीयां ऊपर लटकी हुई दिखाई दे रही है।

काफी सारे ई-रिक्शा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और सामने बीच मे एक टेबल रखी हुई है टेबल के आस-पास लोग बैठे हुए है पीछे तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर का एक बड़ा-सा चित्र दिखाई दे रहा है।

एक महिला बैठी हुई है जिसने अपने पास एक पुस्तक रखी हुई है किनारे तरफ दूसरी महिला बैठी हुई है जिसने अपने हाथ में वीणा ली हुई है और इस तरफ एक आदमी बैठा हुआ है जिसने अपने हाथों में ढोलक ली --

ऊपर छत में बच्चे बड़े बूढ़े जवान सभी प्रकार के लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहे है।